गाड़ी बहुत बड़ी दिख क्योकि वो पतली है एक गाडी मोटी है कुछ रोड पर रखी हुई है रोड भी काला है जो भी डामर का बना हुआ है हरा-भरा भी दिख रहा उम बादल भी दिख रहे है।

बहुत अच्छा लग रहा है बहुत मस्त कंघी करि हुई है बहुत मॉल बना हुआ टाइल्स भी लगी हुई है देखने में अच्छा लग रहा पि फ़ोन भी रखा हुआ है स्किन भी दिखा है देखने में अच्छी भी लग रही है बहुत--

यहाँ पर फूलो की माला बनी हुई है बहुत सारी माला बनी हुई है जोकि देखने में बहुत बड़ी है और बहुत अच्छा रंग भी है।

ये एक शेर जंग पिंजरा में उड़ा हुआ है जो के देखने में अच्छा रहा है देखने में बहुत अच्छा लकड़ी पर बैठा हुआ है शेर देखने में--